परे है बहोत लोग लेडिस है और जेन्स भी है वो ढोलक लेके खडे है जो बजा रहे है कुछ लोग वाइट ब्लैक में कपड़े पहने है कुछ--

और यहाँ पे पेड़ का छओ बन रहा है।

एक बिल्डिंग है उसके बगल में दूसरी बिल्डिंग है उसके बगल में तीसरी बिल्डिंग है।

एक घर है एक घर के अंदर एक मिरर लगाई हुई है टेबल है कुर्सी है जो तीन टेबल --

तीन कुर्सी है दिवार है और उस घर में लाइट जल रही है।

यहां पे शादी हो रही है इसमें एक दूल्हा एक दुल्हन है और एक पंडि जी है--

रोड पर खड़ी है और एक पोस्टर पे लेडीज और जेंट्स की फोटो है।

और ग्रीन और इस बाँस है बगल में।

वो जो के बहत सारे यहाँ हरियाली है।

यहाँ पे एक ब्लू कलर की बोर्ड है जहाँ पे --

पूल है और उसके पीछे कई सारे पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पहाड़ पर एक ब्लू कलर का आँ --

एक ब्लू टी शर्ट पहना एक आदमी खड़ा है एक लाल टी शर्ट --

यहाँ पे तीन फोटो लगे हुए है जिस फोटो के अंदर --

यहां पे एक बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के दीवाल पर पच्चीस लिखा हुआ है।

और पचीस की बिल्डिंग के ऊपर दूटीअन लिखा हुआ है और वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है।

किताब और बच्चों खेलने के लिए बैठा यह बहुत अलग अलग कलर के हैं लाल ब्लू ग्रीन ।

और यहा पे एक पेट्रोल ले रहे है एक बोहोत सारे आदमी खड़े है यहा पे दो तिन कलर के झंडा लगा हुआ है।

ग्रीन रेड येलो ब्लू कलर का है।

और ऊपर स्टार बकस कॉफ़ी लिखा हुआ है।

और नीचे बाहोत सरे मार्बल लगे हुए है।

यार्ड्स है और घर और जो स्कूल है उसमे ग्रिल लगा हुआ है गेट है।

यहाँ पे एक गर में एक बस लगा हुआ है बाहर एक कार लगा हुआ है और आदमी बाहर की ओर आ रहा हैं एक बड़ा सा पौधा है लाल कलर का घर है।

उसके नीचे एक लाल कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

ये एक रूम है रूम में पंखा ऐ_सी बेड चेयर --

कल है उसके बाद एक पर्दा लगाने के लिए एक स्टैंड है।

और स्कुल में बहत सारे पौधे लगे हुए है।

लाइट लगे हुए हैं जो जल रही है ये लाल कलर का ऊपर का छत है।

और नीचे साइड का दीवाल वाइट कलर का है।

यहाँ पेट्रोल के सामने एक बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे--

मारुती सुजुकी की अल्टो खड़ी हुई है उसके सामने एक घर है जो उसमें एक दो गेट लगा हुआ है।

साम ने वेलकम ओ लिखा हुआ है एक आदमी टोपी लगाये हुए खड़ा है जिका हुआ है एक शर्ट पहना हुआ है ब्लू जीन्स एक चापल पहना हुआ है।

बहार बहोत सारे पेड़ लगे हुए है बहोत सारे फूल है बहोत सारे झंडा है।

हरे हुए भी है यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है मार्बल भी है.

यहाँ पर बहोत सारे लड़की डांस कर रही है एक लाल कलर की एक पिंक कलर की--

कुछ एक आदमी सीढ़ी पर बैठा हुआ है एक वाइट कलर का फूल है।

ये एक हॉस्पिटल है न्यूट्रॉ_डी करके सेक्टर थ्री में है यहाँ पे एक पैशन प्रो करके बाईक खड़ी है जिसमें एक हेलमेट --

है यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक पेड़ है लाल रंग की हॉस्पिटल है लाल रंग की बिल्डिंग हॉस्पिटल है सामने एक कार है।

ये एक कॉफ़ी स्टॉले है जहा पे एक सीसे में बिस्कुट है दुसरे सिसे में भी बिस्कुट है लाल कलर का आदमी शर्ट पेना हुआ है।

चार पानी का बोतल है एक गिलास है एक आदमी ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ है और ब्लू कलर का पैंट है यहां पे एक बैठने के लिए है।